नीचे बहुत सारा आदमी है।

छह गिलास सात गिलास आठ गिलास नौ द --

बहुत सारा टोटो एक दो तीन चार पांच छे।

सात आठ नव दस बहुत सारे टोटो हैं।

बहुत बड़ा कॉलेज का फील्ड है।

एक ठो बोर्ड भी लगाव हे।

ये ग्रिल का गेट है आदमी अंदर घुस रहा है।

लाइट लगा हुआ है रात का सीन है।